सामने देखिये यहां पर बहोत सारी कारे हैं।

लेफ्ट साइड बहुत सारे टायर पड़े हुए हैं एक लोहे का गेट पड़ा हुआ है।

राइट साइड एक ऑरेंज कलर की ट्रॉली भी खड़ी हुई है।

और लेफ्ट साइड बहुत सारी साइकल दिखाई दे रही है।

सामने देखिए यहां पर जिम का बहोत सारा सामान रखा हुआ है यहां पर जिम का पोस्टर भी दीवार पे लगा हुआ है।

लेफ्ट साइड में एक ग्रे कलर का सोफा रखा हुआ है।

सामने देखिए बहुत सारे ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं टीन के नीचे।

इस बिल्डिंग में छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं।

दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है एम एम जी फॉर्म्स इस पे नंबर भी लिखी हुई है दो।

सामने देखिए बैलून्स से बोहोत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और थर्टीन इयर लिखा हुआ है।

छोटे छोटे मकान छोटी छोटी गलियां रंग बिरंगे मकान।

सामने देखिए बहुत सारी लोहे के समान दिखाई दे रहे हैं लोहे की परत दिखाई दे रही है।

घर घर पे व्हाइट कलर की ब्लू कलर की टंकी धरी हुई है।

और यहां पर बेड के ऊपर एक मेज और एक प्रेस भी दिखाई दे रही है ब्ल्यू कलर का बैग भी है।

मस्जिद है ब्लू कलर से इसमें सजाया हुआ है यहां पर बहुत सारे मैन और बच्चे खड़े हुए हैं।

पीछे वाइट कलर की दीवारें हैं पिंक कलर की बाउंड्री हैं।

दुकान है दुकान के ऊपर बी_जे_पी के कमल के झंडे भी लगे हैं जो की ऑरेंज और ग्रीन कलर के है।